जिन्होंने साड़ी पहनी है और ये कुछ डांस जैसा कर रहे हैं।

इस ट्रक का कलर व्हाइट है वहां पे कोई भी आदमी नहीं है।

जिसको लिख के हैं वेलकम टू क्रिस्टो वेओ ।

दरियाव है जिसके बीच में एक ब्रिज है जिसका कलर स्काई ब्लू है।

ब्रिज के नीचे से इनको ये पिलर से बांधा गया है।

ये एक मार्केट है जिसमें उम्म ऑटो स्कूटी बोहोत सारे ऑटो स्कूटी वगैरा है।

एक दीवार है जिसके पीछे एक मकान है जिसका रंग सफेद है।

और ऊपर भी बोर्ड है जिस पर लिखा है पी_टी_ओ ।

जो की ब्लू और वाइट कलर की है और इसके आगे पेड़ पौधे भी हैं और एक ब्लैक कलर का गेट भी है।

वगैरह हर एक किस्म की ज्वैलरी लिपस्टिक मेकअप वगैरह बेच रहे हैं।

वहां पे बहुत सारे बड़े बड़े बंबू ट्री लगाके है जो की बहुत ही सुंदर लग रहे हैं।

जिसमें इन्होंने एक साड़ी लगा के रखी है।

जीसके बाहर वहां पर बहोत सब बड़ी भीड़ है औरतों की मर्दों की ये लाइंस में बैठे हुए हैं।

कोई निशाना लगा रहे हैं वहां पे चेयर्स भी बहुत सारे है।

बलूंस की डेकोरेशन रेड और यलो से की गई है।

ये एक अमर्त है जो इस मूर्ति को कुछ मूर्ति के साथ कुछ कर रहा है।

अ अलमारी है। इस अलमारी के ऊपर इन्होंने बोर्ड लगाया गया है जिसपे लिखा है ग्लोबल ।

जिसके साइड में भी दो बैठने की जगह है जिसका कलर लाल और सफेद है।

लड़की है जिसने पिंक कलर का ड्रेस पहना है। जिसमें गोल्डन की लाइनिंग वगैरा भी है।